काउंटर के ऊपर कुछ सामने भी रखी दिखाई दे रही है।

ऊपर सीलिंग में गोल्ड डिजाइन बना दिखाई दे रहा है।

गमले में फूल भी लगे दिखाई दे रहे हैं।

बुटीक के बाहर बहुत सारे बिलाउजे टंगे दिखाई दे रहे हैं।

इस चित्र में काफी सारी पानी दिखाई दे रही है।

और इस चित्र में एक साइकल भी दिखाई दे रही है।

और एक बाइक भी लगा दिखाई दे रहा है।

चिल्ली में बहुत सारी लाइटें लगी दिखाई दे रही हैं पिलर काला और ऑरेंज रंग का दिखाई दे रहा है।

सीलिंग काफी अच्छा से सजाया गया है।